और दूसरी लेडिज है दे रही है।

और पानी खूब तेजी से आ रहा है।

कोई सड़क का काम चल रहा है।

और अच्छे अच्छे फूल हैं।

एक मेज है। मेज पर बुके है।

एक फोन लगा हुआ है जो चार्जर पर लगा हुआ है।

इसके ऊपर तीन एसियों के डब्बे लगे हुए हैं।

यहां पर ये पोस्टर है आदियोग्यस्थल्य योग केंद्र।

पिंक कलर का है ग्रीन का सीसे लगे हुए हैं।

यह रोड पर एक आदमी चल रहा है।

ये एक दुकान है मेकअप वाले की।

और उसपे कुछ फाइले रखी हुई हैं।

जोकि बहुत सुंदर लग रही हैं।